यहां पे एक फोर व्हीलर भी खड़े--

कुछ यहां पे गेट भी खुला हुआ है औ--

और उस पेड़ की बीच में एक--